हमे इस तस्वीर में एक बिल्डिंग नज़र आ रही है जिसके बाजु में होटल लिखा हुआ है।

सफ़ेद कलर की लाइट जल रही है काफी बड़ी बिल्डिंग है। बिल्डिंग सफ़ेद --

जे तस्वीर में हमको ए बडी सी ऊँची लंबी --

बोहोत सारी भीड़ दिखाई दे रही है उसमे --

पेन स्टैंड दिखाई दे रहा है।

लड़के दिखाई दे री है एक पंखा दिखाई दे रहा हैं।

और साथ ही साथ एक हैण्ड पंप दिखाई दे रहा है।

हमे इस इमेज में कोचिंग इंस्टिट्यूट दिखाई दे रहा है जहां पे बोल्ड लैटर में ट्रेनिंग लिखा हुआ है इंडिया का मैप दिखाई दे रहा है।

पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं हर अलग-अलग रंग की कार --

हमको एक इमेज दिखाई दे रही है जहाँ पे वाइट फ़िक्सर --